माइन लोग जो विदाई को सिस्टम लागरो है।

और फ्रिज भी पड़े है चिप्स है तेल है।

बहुत ही सुंदर देखने मे नजारा और हमे और सामने टावर खड़ा दिखरा ही मकान दिखरा है।

इन ने आप एक यादा को पिटारो भी बोल सका है एम बहुत ही पुरानी-पुरानी यादे इ के मायने --

बहुत ही मस्त लग रही है बिल्डिंग बहुत ही मज़ा आ रहा है बहुत बड़िया पार्किंग है रोड है पेड़ पौधा लाग रहा है लाइटिंग लाग री है। सुणी लाग री है या--

ओ नजारा एक पहाड़ी को है।

और यह बहुत ही पुरानी लाग रेहो है जैने कोई आदमी है जो खुदाई का काम कर रे है और यो अलग-अलग टाइप का --

हरे घास पे ही पड़ रही है मस्त लाग रही है।